एक मेज दिखाई दे रहा है। जिसके ऊपर बहोत सारी मछली दिखाई दे रही है।

एक सड़क दिखाई दे रही है और एक उसके सामने ही वॉश बेसिंग --

होस एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल के दो दो बंदे खड़े हुए हैं।

और बहोत सारे लैटें दिखाई दे रही है।

और एल_सी_डी दिखाई दे रही है और फ्रिज दिखाई दे रही है।